इस फोटो में कुछ अ शॉप का उद्धघाटन होता हुआ नजर आ रहा है केले के पत्ते लगे हुए है ऊपर कुछ अ बॉल पर मालाएं लगी हुई है।

यहाँ एक सेंटर नजर आ रहा है जो की एक हॉस्पिटल का है। यहां पर एक लाइट लगी हुई है दीवाल पर और कुछ लाइनें लगी हुई हैं। ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड लगा है जिसमे --